यहाँ पे एक अ आईना है आईने पर कुछ लाइट्स लगे हुए हैं वहाँ पे एक अ टेबल है और वहाँ पे फूलदान बुके रखा हुआ है एक रेड कलर का एक कप है।

उसे के पास एक साइकिल के जैसा चाक का कुछ दिख रहा है वहां पे एक दीवार दिख रही है व्हाइट कलर की उसमें कुछ लाइटिंग लगी हुई है फ्रेम लगी हुई है बाजू मे दीवार के कुछ काले कलर का गेट है जाने-आने के लिए बाहर।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

आजू बाजू मे पेड़ पोधे दिख रहे है। आसमान दिख रहा है। दिन का समय दिख रहा है| तारों का कंपाउंड दिख रहा है। कुछ गमले दिख रहे है और वहां पे कोई इंसान नजर नहीं आ रहे है।

वाशरूम के लिए जो साइकल के जैसा होता है वो दिख रहा है वहाँ पे सामने एक जो मशीन का जो सिस्टम होता है वो स्क्रीन दिख रहा है लाइट वहाँ पे शुरू है वहाँ पे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है।

एक स्टेडियम नजर आ रहा है । और वहाँ पे ग्राउंड पे एक अ पानी की बोतल भी बिस दिख रही है ग्रीन जैसी और दो कुछ बच्चे नजर आ रहें हैं वहाँ पे एक पीले कलर के--

कुछ अ-अ जो बैठने के लिए बाग बने हुए हैं सीमेंट के ऊपर से पत्थर का शेड बना हुआ है दिन का समय है बड़े-बड़े पोल दिख रहें हैं टंकी दिख रही है आसमान दिख रहा है कोई इंसान नजर नहीं --

कुछ बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे है| सामने से रास्ता दिख रहा है वहा पे बैठने के लिए बड़ा सा सीमेंट का बना हुआ ओटा दिख रहा है और सामने से बिल्डिंग दिख रही है एक पत्रिका शेड बना हुआ दिख रहा है कोई स्टेशन --

पोल पर वहाँ पे अलग-अलग कलर के झंडे दिख रहे हैं लाल पीले नीले हरे वहाँ पे कुछ पेड़-पौधे दिख रहे हैं सामने से आने-जाने के लिए जगह दिख रही हैं आसमान दिख रहा हैं दिन का समय दिख रहा है वहाँ पे हथकड़ी का जो एक अम --